नीचे रेड रंग की मैट बिछी हुई है।

खंभा दिखाई दे रहा है जिसके पास अंडों की ट्रे पड़ी हुई है।

और हरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है और रात का समय है।

और गमलों के पास पेड़ खड़े हुए हैं और इस फील्ड में एक बस खड़ी हुई है।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

और इनके पास एक मैट पड़ी हुई है और मैट के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है।

और इसपर हरे रंग का घास भी जम रहा है।

एक बच्चे ने हरे रंग की जैकेट पहन रखी है तो दो बच्चों ने रेड रंग के कोट पहन रखे हैं।

और एच_ए_आर_एम_ए व्हाइट कलर से लिखा हुआ है।

इस कमरे में दो गेट दिखाई दे रही है और तीन कुर्सी रखी हुई है।

और लाइट भी लगी हुई है।

यह एक कमरा दिखाई दे रहा है कमरे में एक जीना दिखाई दे रहा है।

यह डी_बी पब्लिक जूनियर हाई स्कूल दिखाई दे रहा है जिसका मेन गेट नीले रंग का है।

और कार के पास एक नीले कलर की छत बना रखी है।

इस फील्ड की बहुत बड़ी दीवार है दीवार के पीछे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक कॉलेज दिखाई दे रहा है जो की कॉलेज कई मंजिल है।

जिसके पास हरे कलर का घास खड़ा हुआ है।